यहाँ पे पर्दा भी है बेचने वाला उसके बाद अच्छी और खूबसूरती है देखने में भी बहुत अच्छा है घर में भी टांगों गे तो बहुत अच्छा होगा घड़ी भी है।

बहुत अच्छा है | ये सब बेचोगे तो कितना फायदा होगा फायदा करने के लिए सब कोई करता है।

फूल अच्छी खूबसूरत है मतलब फूल हर एक चीज का काम होता है कोई पूजा पाठ करता है।

ये बहुत बड़ा घर है जिसके बाथ रूम एक बड़ा मतलब मदरशा है उसके पास जमीन है गेट उठ लगा बड़ा बना हुआ है बहुत अच्छा है देखने में उसके बाद --